--ताज़ा-ताज़ा घास उगी हुई है।

यहाॅं पर एक बोहुत बड़ी स्टेशनरी दिखाई दे रही है।

यहा पर एक बहुत बड़ा मेदान बना हुआ है

यहाँ पर एक गांव बना हुआ है गांव में बहुत बड़े मुर्गा-मुर्गी पले हुए है।

पार्क में फिसल पट्टी बनी हुई है।